यह एक मैदान का फोटो है।

एक पीले रंग की बहोत बड़ी छत है।

एक बहोत बड़ा पंखा भी लगा हुआ है।

पीछे नीले रंग की पट्टी बंधी हुई है।

बहुत सारी पन्नियों में चप्पलें और जूते रखे हुए हैं एक बहोत बड़ा शीशा भी है।

पर बहुत बादल छाए हुए हैं।

बाहर एक लाल रंग का हेलमेट भी रखा हुआ है।

इस फोटो में बहुत सारा डस्ट पड़ा हुआ है।

बाहर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है।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

लाल रंग के खंबे लगे हुए हैं।

एक पीले रंग का स्ट्रोर रखा हुआ है।

बहुत सारी दवाइयां भी रखी हुई है।

बहुत सारे दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं।

दीवार पर सजावट भी करी गई है।

दो तीन सफेद रंग के बोड भी हैं।

ऊपर एक लोहे की छत लगी हुई है।

काले रंग की मोटरसाइकल खड़ी हुई है।

एक हरे रंग का मकान भी बना हुआ है।

इस पर पंख बहुत सारे लगे हुए हैं।

पीछे पीले रंग का एक लोहे का बोर्ड है।

एक बहोत बड़ा कच्चा मैदान है।

छत पर बहुत ज्यादा गंदगी लगी हुई है।

एक पोस्टर पर व्यक्ति का चित्र बना हुआ है।

इस फोटो में एक वैन खड़ी हुई है।

गुलाबी रंग की डस्टबिन भी रखी हुई है।

महिला के बालों में लाल रंग की चिमटियां पेहनाई हुई है।

एक हरे रंग का लाइटर भी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक पीले रंग कि क्रेन है।

एक बहोत बड़ी लोहे की छत है।

एक व्यक्ति ने लाल कल की शर्ट पहरी हुई है।

यह एक मोबाइल की शॉप का फोटो है।

कैमरा भी लगा हुआ है।

यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

एक लोहे का फावला है।

हर एक नीले रंग का कैम्पर पानी का रखा हुआ है।

दो काले रंग के तार भी लगे हुए हैं।

एक नीले कलर का गेट भी लगा रहा है।

एक पर प्लास्टिक का स्टूल भी है।